यहां पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहां हमें गंगा गंगा नाम दिखाई दे रहा है एक कूलर भी दिखाई दे रहा है और दो तीन टॉयलेट भी दिखाई दे रहे हैं।

कोई तो और यहां पे दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं ऐसे दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे।

पता पूंछता हूं अब तो आजा।

यहां पे मुझे बहुत ही खतरनाक दृश्य दिखाई दे रहा है यह फोटो एक रजिस्ट्रेशन वर्ष ये मेरी तरफ दिखाई दे रहा है।

नहर भी दिखाई दे रही है वास्तव में बहुत ही अच्छा नज़ारा है ऐसा नज़ारा मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में --

ये ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे है ऐसे बादल बहोत अच्छे होते है वास्तव मे बहोत ही अच्छी दिखाई दे रही है ये बोतस्वीर बहोत ही दृश्य है बहोत ही अच्छा है।

वास्तव में मुझे समीर ऑटो रिपेयरिंग सेंटर भी नजर आ रहा है वास्तव में बहोत ही गजब ची--

हां पे मुझे ओझा ट्रेनिंग कंपनी भी दिखाई दे रही है बहोत ही शानदार कंपनी दिखाई दे रही है ऐसी कंपनी दिखाई दे रही है कि मैने मेरी जिंदगी में ऐसी कभी कंपनी नहीं --

और यहां पे हमें भी दिखाई दे रहा है और बहोत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है।

ये दुकान और टायर पंचर की लग रही है और--